और साइड में एक जाने का रास्ता बना हुआ हैं।

ढाबे के नीचे कुछ टंकियाँ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर चीज में चिप्स कुरकुरे वगैरह टंगे हुए हैं।

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं जिनमें तीन लड़के और दो औरतें हैं।

पीछे फूलों से सजाया हुआ है जिसमें लाल और सफेद फूल है।

इस चित्र में हमें एक कमरा दिखाई दे रहा है।

पर काले रंग के गोल-गोल डिजाइन बना हुआ है।

साइड में एक टेबल है जिस पर बोतल दवाई वगैरह नजर आ रही है।

और यहां पर लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ हैं।

सामने एक घर दिख रहा है जिसमें एक जीप खड़ी हुई है मकान कच्चा है साइड ही एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई गई है ।

और एक औरत साइड में अपने बच्चे को लेकर बैठी है।

इस चित्र में हमें दिखाई दे रही है एक सड़क जिस पर एक बड़ी नीले कलर की बस नजर आ रही है एक सफेद गाड़ी दिख रही है।

वो पूजा कर रहे हैं इनको बोध कहते हैं।

आसमान बिल्कुल साफ पड़ा है ये रात का समय है।

इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है एक घर जो कि लाइटों से सजाया गया है।

यहां पर सामने एक कागज पर क्लासरूम लिखा हुआ है।